बोर्ड के पास कुछ सामान भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में सारी तरफ हरियाली नजर आ रही है पेड़ पौधे हैं झूले लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक सुंदर सा गुरुद्वारा नजर आ रहा है जो की सफेद रंग का है।

घास की पट्टी पर लेटा हुआ है धूप के बीच--

क्राफ्टिंग वाली एक स्टिक है जो कि उन्हें पानी में आगे बढ़ने में सहायक कर रही हैं।

यह तस्वीर यह स्पष्ट कर रही है कि--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

मोटरी के ऊपर बैठा देख पा रहा हूं जोकि उसको मोड़कर कहीं और लेके जाने की कोशिश कर रहा है।

इस चित्र में हमें बहुत सारी कारें नजर आ रही हैं रंग बिरंगी कारों का--

कार्य किया जा सकता है तस्वीर में सिर्फ दो व्यक्ति ही नजर आ रहे हैं और कुछ समान के आसपास नजर आ रहा है।

जगह पर मैं हेल्थ हॉस्पिटल लिखा हुआ भी देख पा रहा हूं।

इसमें चार चांद लगा रही है।

अंदर किसी भी प्रकार का सामान नजर नहीं आ रहा है।

को बनाया गया है साथ ही उसके आसपास एक छोटी छोटी मूर्तियों को भी बनाया गया है।

यह तस्वीर स्पष्ट दिखाई रही है कि एक सफेद खाने की प्लेट में कुछ खाना रखा हुआ है।

सामने एक लोहे की सीढ़ी लगाई गई है जो की--

यह तस्वीर मे कुछ स्पष्ट तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन यह समझ आ रहा है कि एक पानी का फोआरा --

यह तस्वीर एक जिम की है जिसमें एक व्यक्ति दो रौड को पकड़ के अब ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है।

पीछे एक बिजली का बोर्ड भी नजर आ रहा है।